और बहुत सारी मैज भी दिखाई दे रही है यहां पर एक कुर्सी भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई--

मेरे सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस में बहुत सारे पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक रिसॉर्ट दिखाई दे रहा है ये ब्यूटी रिसॉर्ट दिखाई दे रहा है।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

कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर वो कुर्सियां भी रखी हुयी दिखाई दे रहीं हैं यहां पर कुर्सियों का कलर रेड कलर --

दरवाजों का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

बेड पर ग्रीन कलर की चद्दर दिखाई दे रही--

यहां पर मेज का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक बेडरूम दिखाई दे रहा है बेडरूम पर बहुत सारी मशीने भी दिखाई दे रही है।

झील बहुत ही बड़ी भी दिखाई दे रही है।

दिन में बहुत सारे पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं पक्षी--

बिल्डिंग में बहुत सारे खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने एक शॉप दिखाई दे रहीं हैं यहाँ पर दीप इलेक्ट्रिक अब दिखाई दे रहा हैं इसका लोगो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा हैं।

रहा है आसमान का कलर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है यहां पर एक नाव भी खड़ी हुई दिखाई--

यहां पर बिल्डिंग का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है।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

के सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में बहुत सारे गरील भी लगी हुई दिखाई दे रही है गार्डन में हरी घास भी दिखाई दे रही --

ये दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारी ग्रील भी दिखाई--

मेरे सामने एक रोड दिखाई दे रहा है। रोड पर बहोत सारी बाइके भी दिखाई दे रही है। रोड पर बहोत सारे लोग भी दिखाई --